पीछे एक रिक्शा भी दिखाई दे रहा है साथ मे कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है।

इस चित्र में हनुमान मंदिर नजर आ रहा है मंदिर के आस पास पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है सामने घास भी दिखाई दे रही है।

इमारत के आस-पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है पीछे खूबसूरत आसमान भी दिखाई दे रहा है।

चित्र के अंदर परदे भी नजर आ रहे है साथी मे कुछ पौदे भी दिखाई दे रहे है चित्र के अंदर अलग-अलग लाइटे भी नजर आ रहे है।

चित्र मे कुछ इमारते भी नजर आ रही है सामने रोड पर लेटे हुए कुत्ते भी नजर आ रहे है तराजू मे आलू भी दिखाई दे रहे है।

पीछे कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे है एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है और कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है पेड़ पर गुलाबी कलर के फूल भी नजर आ रहे है।

ऊपर कुछ प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है। आसपास कच्चे मिट्ठी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र के अंदर एक पार्क नजर आ रहा है पार्क के अंदर घा --